managing content पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial हम सीखेंगे नया कंटेंट बनाना
कंटेंट को मैनेज करना और रिविजन
इस tutorial को record करने के लिए मैं उबंटु ऑपरेटिंग सिस्टम drupal 8 और firefox वेब ब्राउजर उपयोग कर रही हूँ
आप अपने पसंद का कोई भी web browser उपयोग कर सकते हैं
अपनी website को खोलें जिसे हमने पहले ही बनाया है
अब हम सीखेंगे कि now कंटेंट को कैसे बनाएँ
हम अपना पहला event जोडेंगे content पर click करें
add content पर click करें औऱ events चुनें
हम कुछ चीजें प्रदर्शित करने के लिए सैम्पल event set करेंगे जिसे हमने set किया है
मैं event name field में drupalcamp cincinnati type करूँगी
event description field में this is the first drupalcamp in the southern ohio region type करें
ध्यान दें कि create new revision checkbox यहाँ on है
दाईं ओर यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना है
अभी के लिए event logo को खाली छोड़ दें
लेकिन हम एक event website चाहते हैं
अत: हम url
link text में हम इसे खाली छोडेंगे display ही वास्तविक url होगा अत: अभी के लिए हम यह करेंगे
जब हम event date पर click करते हैं तो एक छोटा सा calendar दिखता है
january 11th 2016 चुनें
add हम कोई भी event sponsors नहीं जोड़ सकते क्योंकि हमारे पास कोई भी user groups set नहीं है
drupal का एक ओर महत्वपूर्ण feature inline entity reference है
यह आपको user groups जोडने की अनुमति देता है लेकिन हम इसे बाद में सीखेंगे
हमारे पास कुछ event topics हैं type करें i and select introduction to drupal
add another item पर click करें इस बार m m time करेंगे
ध्यान दें कि सभी topics जिनमें m है दिखेंगे
अत: module development चुनें आप अपने अनुसार अन्य topics चुन सकते हैं
फिर save and publish पर click करें
यहाँ हमारा drupalcamp cincinnati node है
title body event website जो कि स्वत: ही link होती है लेकिन यह वास्तव में मौजूद नहीं है
हम इसे event date format में बदलते हैं यदि हम चाहें
यह taxonomy है
यदि यह link clicked किया जाता है तो प्रत्येक single event introduction to drupal से टैग होगा और publication तिथि क्रम में सूचीबद्ध होगा
हमने अपना पहला event node सफलतापूर्वक बनाया है
add shortcuts और add content पर click करें और इस समय अपना user group जोड़ें
हम इसे cincinnati user group कहेंगे
user group description field में type करें: this is the user group from the southern ohio region based in cincinnati
we meet on the 3rd thursday of every month
हम यहाँ और अधिक जानकारी भी जोड़ सकते हैं
इस user group के लिए url है: https colon slash slash groups dot drupal dot org slash cincinnati
यह अभी न के बराबर है लेकिन यह वास्तव में इस तरह प्रदर्शित होगा
अपने क्षेत्र में user group to करने के लिए groups dot drupal dot org पर जाएँ
फिर अपने पसंद के अनुसार search करें
यहाँ दुनिया में कई user groups हैं
group contact में type करें: drupal space group और contact email में type करें: drupalgroup @email com
ध्यान दें कि यह सही formatted email address होना चाहिए अन्यथा drupal निरस्त कर देगा
यहाँ multiple options में से group level चुनें
और events sponsored में हमें event चुनना होगा
यदि आप d करते हैं तो drupal camp cincinnati dropdown में प्रदर्शित होगा
save and publish पर click करें
हमने अपना पहला user group सफलतापूर्वक बना दिया है
अब हम अपने कंटेंट को मैनेज करने के बारे में सीखेंगे
यदि हम content पर click करते हैं तो हमें हमारे site पर सभी कंटेंट की सूची मिलेगी
यह कैसा content type है इस बात से कोई फर्क नहीं पडता हम सभी कंटेंट देख सकते हैं
हम publish status content type और title द्वारा filter कर सकते हैं
यदि हम यहाँ w type करते हैं और filter पर click करते हैं हमें केवल w से शुरू होने वाले nodes प्राप्त होंगे
reset पर click करें
यदि हमारे पास कई भाषाएँ हैं हम अन्य भाषा भी चुन सकते हैं
एक बार हमें हमारी सूची प्राप्त हो जाती है तो हम एक ही समय पर एक से अधिक node चुन सकते हैं और कुछ कार्य कर सकते हैं जैसे delete make sticky promote publish आदि
अत: मैं unpublish content चुनूंगी और apply पर click करें
ध्यान दें कि मेरे द्वारा चुने गए nodes unpublished में अपडेट हो गये हैं
यह कंटेंट को manage करने के लिए आसान जगह है
सभी nodes को एक बार चुन लें publish औऱ फिर apply पर click करें
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि कुछ पहले से ही प्रकाशित हैं अब सभी कंटेंट प्राकाशित हो गया है
हम यहाँ किसी भी node को edit या delete कर सकते हैं या nodes के एक batch को चुन सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं
drupal में कंटेंट मैनेज करना काफी आसान है toolbar में content link पर click करें और यह आपको इस पेज पर लाता है
ऊपर दिए गए tabs का उपयोग करके बनाए गए comments को हम manage कर सकते हैं
और किसी भी file field में uploaded किए गए files को भी मैनेज कर सकते हैं
image को देखने के लिए इस पर click करें और यह screen पर खुलेगी
image कहाँ उपयोगित है यह देखने के लिए places link पर click करें यह हमें nodes की सूची देता है जहाँ file का उपयोग किया गया है
हम administration toolbar में content link से अपने content comments और files को manage कर सकते हैं
add अपने nodes में एक comment जोड़ें
मैं यह comment node रही हूँgreat node! fantastic content
save पर click करें
क्योंकि हम superuser के रूप में लॉगिन हैं हमारे लिए सब कुछ दिया गया है हमें वास्तव में कुछ भी नहीं करना है
यदि आप comments को स्वीकृति के लिए set करते हैं तो आप content comments पर click कर सकते हैं और आप उनको यहाँ manage करने में सक्षम होंगे
उदाहरण स्वरूप comments को प्रकाशित करें या उन्हें इस screen से डिलीट कर दें
drupal में content comments और files को एक ही स्थान पर मैनेज किया जा सकता है
अब node अपडेट करें या node में बदलाव करें और देखें कि revisions कैसे कार्य करता है
home page पर आने के लिए home link पर click करें
drupalcamp cincinnati में quick edit पर click करें
node की body में कुछ अधिक content जोडते हैं there is another great camp in columbus every october
save पर click करें
और अब drupalcamp cincinnati पर click करें और आप revisions नामक नया टैब देखेंगे
revisions पर click करें और आप देखेंगे कि admin ने इस node को 2:37 पर अपडेट किया है और यह current version है
पुराना version भी उपलब्ध है
इस पर क्लिक करके हम पुराने version को देख सकते हैं जिसमें दूसरा paragraph नहीं है
वापस जाने के लिए revisions पर click करें फिर हम उस पुराने version को revert या delete कर सकते हैं
यहाँ अन्य modules है जो इसे आसान बनाते हैं
लेकिन drupal में पूर्ण version control निर्मित है अत: आप जान सकते हैं कि किसने और कब दिए गए node में बदलाव किये हैं और आप वापस revert कर सकते हैं जब आप चाहें
drupal में version control निर्मित है और यह बहुत ही मददगार है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
इस tutorial में हमने सीखा contents बनाना contents मैनेज करना और revisions करना
यह video acquia और os ट्रेनिंग से लिया गया है और spoken tutorial project आईआईटी बॉम्बे द्वारा संशोधित किया गया है
इस link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करके देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाओं का आयोजन करती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें
spoken tutorial project nmeict मानव संसाधन विकास मंत्रायल और nvli संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है
यह स्क्रिप्ट बिंदु पांडे द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद